यहाँ बहुत बड़ा दुकान है और बहुत शटर भी है और --

यहाँ पर बहुत बड़ा ऑफिस है ऑफिस में बहुत कुर्सियाँ भी हैं और बैलून भी है ।

घास और एक हरा-भरा घास भी दिखाई पड़ रहा है।